और हमे दो लेडी दिखाई दे रही है चार आदमी दिखाई दे रहे है और सामने हमे चारो पोस्टर लेगे हुए दिखाई दे रहे है।

इस इमेज मे हमे एक आदमी दिखाई दे रहा है जो एक मशीन से नीचे फर्श पे गड्ढे कर रहा है गड्ढा करनेकी मशीन है।

और हमे नीचे पाइप भी डले हुए दिखाई दे रहे है। एक हथोड़े भी दिखाई दे रहे है आदमी वो सफ़ेद कलर का टी-शर्ट पहने हुए दिख रहा है।

सभी एक हात उपर किए हुए है एक हात नीचे किए हुए है सभी शूज पहने हुए है और ए डान्स क्लास मे डान्स सीख रहे--

यहा पे हमे एक लड़की दिखाई दे रही है। जो व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए है। बहुत सुंदर सजी हुई है। फूलोके माला पहने हुए है।

यहाँ पर हमे एक मंच बना हुआ दिख रहा है मंच पर ग्रीन मेट बिछी हुई है उसमे हमे बहुत सारे लड़कियां दिखाई दे रही--

यहाँ पर हमे एक स्टेज पर एक लड़का और एक लड़की दोनों खड़े हुए और गाना गाते हुए दिख रहे है लड़का हाथ मे--

यहाँ पर हमे एक लड़का जिम करते हुए दिखाई दे रहा है ये लड़का व्हाइट कलर की बनियान और व्हाइट कलर का ही लोवर पहने हुए दिख रहा है।

टोप लगा हुए है येल्लो कलर का और जा जाकेट भी पहने हुए रेड कलर कीऔर हमे यहा लकड़ी हुई खड़ी हुई दिखाई दे रही है।